ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एम.आर.एफ. टायर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

ऊपर में वेंटिलेटर की खिड़की दिखाई दे रही है घड़ी दिखाई दे रही है बोर्ड दिखाई दे रहा है।

हरे रंग की लगी हुई दिखाई दे रही है आगे में नीले रंग की पीले रंग की और हरे रंग की लगी हुई दिखाई दे रही है।

के किनारे में घास उगी हुई दिखाई दे रही है आगे में पेट्रोल पम्प बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बाजू में एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

सामने में बहुत सारे कैटलॉग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

के ऊपर गिल्लीयाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं ।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

उसके आजु-बाजु में दो खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर में दो वेंटीलेशन दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में सफ़ेद और लाल रंग की फूल का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है ।